इसके दीवार पर एक टी_वी भी लटका हुआ है।

इस चित्र में एक आ मिस्त्री काम करता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।

साइबर कैफे के अंदर जेरॉक्स लेमिनेशन एंड पास फोटो का सुधा उपलब्ध है।

इसमें बहोत सारी चूड़ियां रखी हुई है।

में बहुत सारे फल फूल रखे हुए हैं।

समाकलन करने के लिए एक मिस भी आगे खड़ी है।

इस फोटो में सजा हुआ दिखाई दे रहा --

उस सर पर बोझ भी ढो रहे हैं।

चार पांच चिड़िया का खिलौना भी मौजूद है।

उनके दिवालों पर अच्छी अच्छी पेंटिंग भी टंगी हुई है।